और लाल कलर के फूल पौधे लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पे खूब सारा नारियल का पेड़ है और यहां पे चलने का भी बना हुआ है।

येलो कलर का गमछा भी पहना हुआ है और इसके आजू बाजू बोहोत सारे--

ये एक किसी आश्रम का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पे पेड़ के नीचे--

जो कि बहोत लंबी स्क्वायर फीट में बना हुआ है और यहां पे टावर और बच्चों के खेलने कूदने नहाने के भी इत्यादि बहोत कुछ यहां पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

लाइट भी इसमें लगे हुए इसमें नजर आ रहे हैं मुझे जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं।

और पानी का लेवल भी काफी इसमें हाई दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर के इसमें पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है जैसे कि मैं देख पा रहा हूं और अंकल भी सी--

यहां पर एक इंडियन ढाबा दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर ए_सी कपड़े इन पड़दे भी लगे हुवे दिखाई दे र--

काम मे बिजी नज़र आ रहे है और एक रेड टी शर्ट येलो टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट और इत्यादि टोपी पहने हुए भी भईया इसमें नज़र आ रहे है मुझे --

यहां एक आर्केस्ट्रा नजर आ रहा है जो की शादी के लिए डेकोरेशन का भी--

और उनका नज़र किसी का नज़र फोन पे है और किसी का नज़र कहाँ पे है और ऊपर लाईट भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

बैठा हुआ दिखाई भी नही दे रहा है ऐसी खाला या और ब्लैक और व्हाईट कलर की इसमें--

यह एक रोड का दृश्य नजर आ रहा है जो कि--

सिटी कैफे युअर ब्रेकअप युवक गया करके कुछ लिखा हुआ भी इसमें मुझे--

आपका इसमें क्या कहेना है और यहां पे बहोत सारी सामान भी रखी हुई मुझे इसमें दिखाई दे रही है।